यह किसी अस्पताल का सीन है । शायद लग रहा है कोई अस्पताल है हॉस्पिटल है ।

यह एक बैंक है या नही तो फिर चाहे मॉल भी होगा वहा देखिये उजरा कलर का एक कार फार्चूनर लगी हुई है। दो आदमी उसके आगे है। उसके आगे एक बाइक लगी हुई है।

और साइड में भी कुछ मंदिर हैं और इसमें कुछ बाबा लोग पूजा कर रहे कुछ जा रहे एक माताजी भी है वहाँ पे।